यहॉं पर सभी लोग बैठे हुए एवं खड़े हुए हैं और --

यहाँ पर एक बच्ची तीन लड़की का विडियो बना रही है जो कि वो नीचे --

यहाँ पर ऑयल एवं पारले जी और --

ए यहाँ पर बाइक बेची जाती है और यहाँ नई-नई बाइक उपलब्ध है जो की यहाँ गाड़ी लोन पर भी अलेवल है।

यहाँ पर बिस्कुट एवम आयल ए और कई प्रकार की चीज यहाँ मिलती है जोकि बहुत अच्छी है।